ये पेट्रोल गाड़ी को अ गाड़ी के डिक्की को ओपेन कर के और पेट्रोल को उसमें भर रहा हैं।

यहाँ पोस्टर भी लगा है धरना प्रदर्शन का ये महिलाए धरना प्रदर्शन कर --

जिससे हमारे हमारे जितने भी पब्लिक है जो इस पुल को असानी से अपने सवारी से पार कर --

यह शहर का शहर में डूबता हुआ सूरज जो कितने सारे आसमान में रंग बिल रंग कलर दिख रहा है।

यह एक होटल या रेस्टोरेंट --

कॉलेज का बड़ा सा गलियारा जो देखने में बहुत ही सुन्दर और साफ सुथरा लग रहा है इसमें लाइट भी जल रही है और इसमें एरो का चिन्ह बना है कैसे जाना है रास्ता दिखाने --